इमेज में किसी परिक का कुछ दृश्य नजर आ रहा है यहां पर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़े बनी हुई नजर आ रही हैं ।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

इस इमेज में एक मोर नजर आ रहा है | यहाँ पर कुछ चीजे बनी हुई दिखाई दे रही है | कुछ लकड़ों के ऊपर मोर नजर आ रहा है।